सरिये दिखाई दे रहें हैं। सीमेंट दिखाई दे रही हैं। इटें दिखाई दे रहे हैं। बड़े पेड़-पौधे दिखाई दे रहें हैं।

बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहें हैं। एक बोर्ड दिखाई दे रहा है। बोर्ड पे वाराणसी पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है।

खम्बा दिखाई दे रहा है। बहोत बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहें हैं।